पिक्चर मे एक घर बना हुआ है जो व्हाइट कलर का है। व्हाइट कलर का पैंट हैं और उसके सामने जस्ट एक बड़ा गेट हुआ है। और उसमे पैंट बलैक कलर का है।

और हरे कलर का यहाँ से पूरे वृक्ष लगे हुए है खजूर के एक वृक्ष लगा हुआ एक जै--

इस पिक्चर में दो लडके हैं जो चल रहे हैं और पास में बिजली के खंबे हैं और--